ये एक बस स्टैंड लग रहा है और बस स्टैंड हो या न हो लेकिन यहाँ जाम बहुत सारे लगे हुए हैं।

उत्तरी बिहार के लिए जो रिपोर्ट है वो काफी अच्छा रिपोर्ट है खास करके जो मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी जो आस-पास के एरिया है उनके लिए।